जैसे की मैं देख पा रही हूं बहोत सारी बाइक नजर आ रही है और एक बाइक --

भी नजर आ रही है सामने बहुत सारे हरे कलर के पेड़ भी नजर आ रहे--

घर के बगल में एक पानी की टंकी भी रखी नजर आ रही है और मैदान में बहुत सारे गमले भी रखे हुए नजर आ रहे --

के बाहर एक पीले कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ नजर आ रहा है और एक बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

के मै देख पा रही हूं ये--

नजर आ रही है और इसमें एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई नजर आ रही है जिसका कलर नीला नजर आ रहा है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक ऑफिस नजर आ रहा हैं और ऑफिस में रखी बहुत सारी --

सारी भी रखी हुई नजर आ रही है और बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रही है ।

वो लाइट भी जलती हुई नजर आ रही है और बाइक का टायर भी नजर आ रहा है सामने लगती हुई झाड़ू भी नजर आ रही है।

और बहुत सारे कैलेंडर भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं सामने भगवान का मंदिर भी नजर आ रहा है ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक ओरन सा बड़ा सा मंदिर सा नजर आ रहा है और उसके ऊपर लगी सोने कलर की गुम्बद भी नजर आ रही है और उसके--

और पानी गर्म करने के लोटे भी नजर आ रहे हैं और नीचे एक तेल भी रखी भी नजर आ रही है और--

और ऊपर जलती हुई लाइटे भी नजर आ रही हैं और ए.सी. भी लगी हुई नजर आ रही --

पा रही हूँ यहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं और उनमें बहुत सारी खिड़कियां भी लगी हुई नजर आ रहें --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने बहुत बड़ा पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और--

और बहुत सारे टीचर भी नजर आ रहे हैं और कुछ टीचर्स के मुंह में लगा हुआ मा --

सामने एक बाइक और स्कूटी खड़ी हुई नजर आ रही है नीचे बहुत--

योगा करते बी नजर आ रहे हैं सामने एक गेट भी लगा हुआ नजर आ रहा हैं --

टंगे दो पर्दे भी नजर आ रहे हैं सामने एक बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है और --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पर दवाखाना लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक शॉप नजर आ रही है शॉप के अंदर बहुत सारे कोके भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

खड़ा हुआ नजर आ रहा हैं और बहुत बड़ा टीन शेड बी नजर आ रहा हैं --

सामने बहुत सारे बच्चों की साइकिलें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं जो एक बेंच पर रखी नज़र आ रही हैं।

कि मैं देख पा रही हूं रात का समय नजर आ रहा है और बहुत सारी लाइटें भी जलती हुई नजर आ रही हैं।

और बहुत सारी औरते साड़ी पहने नजर आ रही है और ऊपर बिल्डिंग भी नजर आ रही है और --

और दो गेट भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारी डमिया भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

निचे सफेद कलर का फर्श बी नजर आ रहा हैं और बहुत सारे हेंगरों पर कपडे़ --

गाड़ी में एक कैंटीन नजर आ रही है और उसके अंदर बहुत सारी टैबले भी रखी हुई नजर आ रही--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां एक शॉप नजर आ रही है शॉप के अंदर जलती हुई लाइट भी नजर आ रही है और एक कैमरा लगा हुआ नजर आ रहा है --